तस्वीर की देख कर हम यह कह सकते है की यह एक मंदिर की तस्वीर है जहां पर सब श्रद्दालु पूजा करने के लिए आ चुके है यहां पर साम का माहोल हो चूका है यहां पर कई सारे भीड़ भी नजर आ रहे है और यहां पर घूमते हुए कई सारे भीड़ भी नजर आ रहे है।

पिक्चर को हम देख के कह सकते है की यह एक गाय की तस्वीर है गाय घास खाती हुई नजर आ रही है।

यहां पर बहोत सारे बिजलिया पेड़ दिखाई हुई है यहां पर बहोत सारे चेयरे भी दिखाय दे रही है जोकि की काफी सारे सुंदर दिखाई दे रहे है ।

को देख कर हम यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही सुंदर पंप है यहां पर पेट्रोल भी बिक रहा है और घर भी बिक रहा है यह एक बहुत ही सुंदर है यहां सीसी पारदर्शी लाइट दिखाई दे रही है।

यहा पर एक बहुत ही सुंदर दिखाय देने वाली एक घास भी है जो की काफी आकर्षक है।

पिक्चर को देखकर हम यह कह सकते हैं कि यह एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप में काफी ज़्यादा लाइटिंग है ल-रात होने की वजह से लाइटिंग और भी खिल कर दिखाई दे रही है यहां पर एक गाड़ी भी आया हुआ है जो कि पेट्रोल भरवा रहा है ।

पिक्चर में देख कर हम यह कह सकते है की यहां पर काफ़ी पिया जा रहा है यहां का मौसम खाफी ज्यादा अच्छा है इसलिए कोफ़ी पिने का मन कर रहा है यहां पर दूर कहीं पहाड़ भी दिखाई दे रहा है और मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।